और पीछे बांस का झुर दिख रहा है।

सामने पंडाल वगैरहा लगाया गया है जो की इधर से नहीं दिख रहा है और इसके पीछे घर है।

और इसका बगल वाला एक खड़ा है और उसके पीछे में एक जस्ट बंदर है शायद से बंदर ही है।

और साइड में पेड़ पौधे हैं।

और साइड में एक लाइट लगा हुआ है।

इसमें हमको पेन ड्राउट पेन ड्राइव चिप वगैरह दिख रहा है और साइड में तार वगैरा दिख रहा --

जोकि मोबाइल चार्जर है केबल और उसके ऊपर कैंची वगैरह है और उसके ऊपर ओर बडा बडा कैंची है।

ये एक रूम है जिसमें बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं।

और इसको ठीक किया जा रहा है जो कि इसका आगे का पार्ट्स वगैरह खोल दिया गया है ।

और जांच कर रहा है क्या खराब है क्या नहीं और सामने पेड़ पौधे हैं।

सिर में लगाने वाला कोई दिख रहा है और साइड में खिड़की वगैर है।

टेबल वगैरह काउंटर वग़ैरह है। और पर्दा वगैरह लगा हुआ है।

जो कि यह बाहर से पोस्टर लगा हुआ है।

सामने एक सिटी स्टाइल नाम का कोई दुकान वगैरह है।

सामने दो दिकान दुकान दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ग्रीन नाम का पोस्टर लगा हुआ है।

सामने एक मन्दिर दिख रहा है जिसमे काफी सारा डेकोरेशन वेगेरा किया हुआ है लाइटिंग वेगेरा काफी अच्छा है।

और उसके साइड में एक आदमी जाते हुए नजर आ रहा है और सामने सड़क है।